अ ह इसमे हमें ग्राउन्ड सा दिखाई दे रहा है और सामने इक पत्थर दिखाई दे रहा है जि --

<noise> गाडी आगे से खुली हुई है। एक लड़का गाड़ी के काच पर हाथ रखे हुए है और लाल कलर की टी शर्ट पहने हुआ है। ये कार हमे सफ़ेद कलर की दिख रही है। <noise>

आ इसमें सामने हमें एक ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है | जिसमे बाईट कलर से लिखा हुआ बंधन बैंक और एक बोर्ड में लिखा हुआ है बंधन बैंक एटीएम ।

वो दोनों बिल्डिंगों को लाइटिंग से सजाई गई हैं बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो जॉकेट भी पहने हुए है एक हाथ मुँह में दिए हुए है नीचे रेड कलर का फर्श दिख रहा है।

ऐं इस इमेज में हमें बहोत सारी स्कूटी दिखाई दे रही हैं मोटरसाइकल दिखाई दे रही हैं। दो आदमी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें तीन लेडिजें दिख रही हैं एक जेंट्स दिख रहा है।

अ इसमें एक आदमी लेटा हुआ है त तकिये पे सिर रखे हुए हाथ रखे हुए है उल्टा लेटा हुआ है।

अ इस इमेज में हमे सामने एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो पोस्ट ऑफिस का है।